सीसे की मेज है यहां पे दो कुर्सियां हैं।

और आप देख सकते हो यहां पे ये--

चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है।

और यहां पे आप देख सकते हो गाड़ी की स्कूटी से सफेद गाड़ी के बाद--

और यहां पे एक अ पेड़ है पेड़ खड़ा हुआ है और यहां पर पहाड़ से देख रहे हैं।

हरे भरे पेड़ भी दिख रहे है ऊपर आसमान भी दिख रहा है आसमान ब्लू कलर का दिख रहा और ये पेड़ --

और यहां पे ये पुल से बडे़ हुए है।

ड्रेसिंग टेबल भी है यहां पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे ट्रैफिंक डे --

यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे हरा भरा--

दिख रखे है और यहां पे आप देख सकते है--